ये फल की दुकान है जैसे कि आम ह खरबूजा तरबूजा पपीता खीरा ह चीकू ह अँ --

इमाजन के फ्रीजर में रखल ह एकक किलो के दुठे आइसक्रीम एकठे गुलाबी रंग का ह सफ़ेद रंग का क्रीम ही किम है। ऊपर चोकलेट लागल ह इ पिला रंग का ह।

ये रेलवे स्टेशन ह जवन कि सीढ़ी चढ़ चढ़ के वोहर जाएके ह। कुल आदमी मेहरारू एहिजे से जालन। पूरा जलिया पेंट करवा ह। सीढ़ी सीढ़ी --

ने का जोन पंखा में लगाअवल जाला केसी न के ला उ जंक्शन ह पूरा ढेर सारा ह जोन की लाईट वाइट पर कसल जाला जमीन पे रखल ह इ कुल लोहा के सामान हा --

तरबुजा ह संतरा ह सेब ह नासपाती ह ओकरे बगल में एक्के आदमी खड़ा ह। जोवन पेपर पढ़त हइन।

के पेड़ ह जन पेड़वा के डस्टबिन हरियर रंग का लगल ह और चन्द्रमा भव्य लगत ह रात का टाइम ह लाइट जलत ह।